देखने में बहुत अच्छा लगता है घर भी बढ़िया है देखने में बहुत अच्छा लगता है डिज़ाइन कलर है यहाँ नीचे दिख रहा है घर बहुत सुंदर बना है।

देखने में भी बहुत अच्छा है बहुत अच्छा लगता है | सारा चीज़ आरो देखने में बहुत सुन्दर है अच्छा है सब चीज़ देखने में घर भी |

देखने में बहुत अच्छा लगता है यहाँ पे गाड़ी चल रहा है रोड में देखने में बहुत अच्छा लगता है देखने में बहुत अच्छा लग रहा है। आदमी लोग सब जा रहा है देखने में बहुत अच्छा लगता है बहुत बढ़िया है हर चीज़ में बढ़िया है देखने में बहुत --